ये किसी पार्क का है जो की सामने पार्क मे गैंडा दिखाई दे रहा है जो की पत्थर का बना हुआ है।